ये होटल गेटवे क्रांतका है नीचे पार्किंग है गाड़ी वाला ऊपर में होटल है अच्छा भी आ_ई_पी है ठीक है इसमें गरम रहते है खाते है पेट पूजा होता --

ये बैटरी वाला टेम्पू है जिमे सवारी बैठते है ये गाड़ी ले रा रहा है और पढ़ने वाले स्टूडेंट --

ये शोरूम है लगता है बाइक है आदमी खड़ा है।

शीशा लग रहा है अच्छा लग रहा है --

ये स्टेडियम है लगता है खेलने वाले बच्चों का। नीचे जमीन में घर है अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ लोग बैठे है और एंजॉय कर रहे हैं।

ये एक घर है घर के बाहर गेट है गेट के बाहर चढ़ने फिसल पट्टी टाइप का लटका है उसकी शायद मम्मी बैठी है।

-- बन रहा है खड़ा हुआ नहीं है तो बराबर --